ये प्रतिमाएं गहनों व आभूषण से सजी हुईं--

साथ ही यहां एक लड़का खड़ा हुआ हैं।

यहां पर मुझे एक बिल्डिंग दिख रही है।

जहां पर चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं।

यहां पर मुझे एक रेस्टोरॉन दिख--

भाग रहें हैं और साथ ही प्रतियोगिता में भाग लिए हैं।

जिसके ऊपर डिस्को लाइट लगी हुई है।

जिसके चारों तरफ बस रखी हुई हैं।

जहां पर कुछ वर्कर अपना कार्य कर रहे हैं।

साथ ही यहां पर एक प्रिंटर रखा हुआ है।

एक घर के बाहर एक गाय बैठी हुई है।

इसके बाहर एक मीटर लगा हुआ है।

पार एक गाड़ी खड़ी हुई है।

यहां पर मुझे एक मार्केट दिखाई दे रही है।